यह एक छत की पैंटिंग --

खड़ा है जिसने गरम कपड़े पहने हुये है।

इसके काउंटर पर बहुत सारे व्यक्ती भीड लगा कर खडे हुए है तथा साइड में बाइक से के पास व्यक्ती खड़े--

यह एक स्टेशनरी की शॉप है जहा शॉप की बीच मे पूजा की गई है या बहुत सारी देवी देवता ओकी --